इस फोटो मे एक होटल दिखाई दे रहा है।

लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

वहीं पर एक सफेद कार दिखाई दे रही है।

चेयर के पास में मशीने दिखाई दे रही है।

पास में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में बच्चों की खिलौने वाली--

फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

फोटो में जेंस की जॉकेट दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे भगवान की तस्वीरे दिखाई--

योगा क्लास में बच्चे योगा कर रहे हैं।

उस गेट के अंदर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।